जो एक लड़के कटवा रहे है। फेसियल करवा रहे है और दूसरे देख रहे हैं।

और यह यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग खरीदने के लिए आते है क्योकि यहाँ कम पैसो में मिलते है।

बहोत दूर-दूर तक किसान लोग ले के सिचाई करते हैं और बगल में घर भी दिख रहा है जो कि घर दिखने में बड़ा और सुंदर --

और यह रूम को बहोत ही पैसा खर्च कर के बहोत ही मेहनत से बनाया गया है। इसको देखने के लिए बहोत दूर-दूर से लोग आते हैं।

चाउमीन चाट पकौड़ी सिंघाड़ा --